पोस्टर लगा हुआ है बहुत से दीवार बने हुए है बहुत सारे गाछ है अंदर बहुत बड़ा घर है।

एक जू है जू में बहुत सारे पानी है बहुत सारे जानवर है।

एक कोचिंग है जिसमे बहुत सारे बच्चे है एक टीचर है सामने दो बोर्ड है जो एक व्हाइट कलर का है।